पानी का कैंपर रखा हुआ है डस्टबिन लगा हुआ है।

यहां गुरुद्वारा बना हुआ है पास में छोटा सा पार्क बना हुआ हैं।

यहां पर ट्रेन की पटरी बनी हुई है।

पास में फोटोएं लगी हुई हैं।

काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

यहां पर पार्क बना हुआ हैं।

यहां पर पेट्रोल पंप बना हुआ है।

और भी काफी सारा समान रखा हुआ है।

यहां पर कॉलेज बना हुआ है।

यहां पर रूम बना हुआ है।

यहां पर कपड़ों की दुकान है।

यहां पर बच्चे है काफी सारे पेपर देकर आये है मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

घास लगा हुआ है पौधे लगे है फूल लगे हुए है पास में घर बने हुए हैं गाड़ियां खड़ी हैं।

खंभे लगे हैं बिजली के लाइट तारें लगी हुई है हरा भरा घास लगा हुए हैं झाड़ियां लगी हुई हैं।

यहां पर होटेल बना हुआ है।

खेल रहें हैं फुटबॉल यहां पर बच्चे हैं।

नेट लगी हुई है बास्केटबॉल खेल रहे हैं।